इसके चारो ओर दीवार भी की गई है।

बिल्डिंग का पेंट बहुत ही सुंदर किया हुआ है।

सोसाइटी के अंदर पंजाब नेशनल बैंक है।

नर्सरी में बहोत सारे फूल बूटे हैं।

यहां पर गाड़ियों की सर्विस भी की जाती है और नई गाड़ियां शोरूम में खड़ी है।

यह एक बहोत ही ऊंची इमारत बनी हुई है।

जहां की एक बाहर पीले रंग की स्टूडेंट्स की बस खड़ी है।

बिल्डिंग बहुत ही बड़ी बनी हुई है।

जोकि बहोत अच्छा सीमेंट है।

ये सीमेंट बहोत ही पक्का सीमेंट है।

पूरी तरह हरा भरा लग रहा है टेंट बहोत सुंदर है।

पानी की कभी बिजली की कभी भी कमी नहीं होती।

मोबाइल्स फोन पड़े हुए हैं यहां पर किसी भी प्रकार की--

इमारत का कलर व्हाइट है बहुत सुंदर है।